महल है। एक महल है। हर एक गाड़ी खड़ी है लोग एक आदमी है पेड़ पौधे लगे हैं बहुत सारे कुर्सी है और एक रोड है।

एक आदमी आ रहा है पेड़-पौधे लगे हरे-हरे |

फोटो लेली क्या चुम्ममा दे दो।